दाएं तरफ कुछ पत्थर रखे हुए हैं बाएं तरफ थोड़ा सा पानी भरा हुआ है।

दीवाल का कलर जो है वो वो आसमानी रंग का है अब और ग्रिल की दीवार का रंग जो है वो पीले रंग का है।

दाएं तरफ घने पेड़ लगे हुए हैं आगे की तरफ मिट्टी का एक साफ रास्ता जा रहा है।

यहां पर कुछ टेंट बने हुए हैं जिन टेंटो के अंदर कुर्सी और मेज रखी हुई है उन कुर्सी मेंजो पर कुछ सामान रखा हुआ है।

आगे की ओर एक मुस्लिम व्यक्ती कुछ खाना खा रहे हैं और ढेर सारी लाइटें लगी हुई हैं।

यह एक बाजार के बीच की जगह है जहां पर बहुत से लोग इधर से उधर जा रहे हैं।

पीछे की ओर एक झंडा लगा हुआ है जी स पे कुछ लिखा हुआ है।

एक व्यक्ति साइकिल चला के जा रहा है जिसने नीली जैकेट पहनी हुई है।

बैठे हुए हैं एक व्यक्ति मोबाइल फोन से फोटो खींच रहा है।

यह एक बिल्डिंग है जो एक स्कूल की है जिसका नाम एम_आई_आर_पी पब्लिक स्कूल रंग वाटी लिखा हुआ है।

ऊपर से एक डक्ट निकला हुआ है ए_सी डक्ट जो स्टील का बना हुआ है।

फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए हैं बाल्टियों बाल्टिया रखी हुई है।

यह एक किताब की दुकान है जहां पर एक व्यक्ति अपनी सेल्फी ले रहा है।

गड्ढा भी है दिवालें जो है वो काफी बड़ी और मोटी--

यह एक कंस्ट्रक्शन सप्लायर की जगह है जहां पर बाएं तरफ एक ऑटो वाला खड़ा हुआ है जो पीले रंग का ऑटो है।

यह एक बस स्टैंड की जगह है यहां पर ढ़ेर सारी बसेस खड़ी हुई है।

पीछे एक लाल रंग की बिल्डिंग बनी हुई है जिस पर कुछ लिखा हुआ है।

यह एक सब्जी मंडी की फो अह सब्जी और व फलों का काउंटर है।

यहां पर पांच काउंटर बने हुए हैं फलों के जिनमें अलग अलग फल रखे हुए हैं।

पीछे की ओर एक लाल बिल्डिंग बनी हुई है जिसका नाम गौर ट्रेडर्स है।

आगे से एक महिला जा रही है जो अपने सिर को ढके हुए है।

मंदिर के ऊपर ओम लिखा हुआ है दोनों तरफ और एक सीढ़ी बनी हुई है।

यह ए_टी_एम है जो भारतीय डाक चौबीस घंटे लिखा हुआ है।

दाएं तरफ दो खाली अ अलमारियां रखी हुई है बाएं तरफ अलमारियों में मिठाइयां रखी हुई हैं।

यहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो आसमानी रंग की शर्ट पहने हुए है और अपने हाथ में एक लाल रंग की किताब पकड़े हुए है।

यह एक चिड़ियाघर की जगह है जहां पर ढेर सारे सारस--